यहाँ से मैन गेट है ये यहाँ से बड़े-बड़े गाड़ी जाते होंगे जो भी गेट खुला हुआ है और रोड के किनारे ही है ये मैन गेट ।

रोड के किनारें लाइट भी लगा हुआ हैं बहुत अच्छा मौसम है।

ये पिक्चर बहुत बड़े मेले की हैं।

ये पिक्चर लक्ष्मण इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल का है।